भोजनालय का दुकान है और फास्ट फ़ूड वो चाट कार्नर है और खाना में अंडा चिकन मीट मुर्गा मसलम सब चीज है। कुर्सी टेबल लगा हुआ है। सिलिंडर भी है और देख रहे हैं दु बच्चा लोग भी है अन्दर मे।